रैक में रखी गयी है। यह सभी प्रकार के सब्जेक्ट की है। यह सभी अलग-अलग कॉलम बनाया गया है।

कुछ बच्चे आदमी नजर आ रहे है जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे है।

फ्लाईओवर के नीचे का दृश्य नजर आ रहा है जहां पर कूड़ा गिरता हुआ एक ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है।

यह कूड़ा शहर से ला कर यहाँ पर इकक्ठा करता है। यहाँ से बाहर की और सप्लाई करता --

पहली से पांचवी तक के बच्चो के लिए --

ऑन है। यहाँ पर बकरी इक्कठा होकर अपना चारा खा रही है। ये सभी बकरियां काली व्हाइट रंग की है।

यह एक तस्वीर है।

रेड़ी का है। इस रेड़ी के ऊपर जय माता दी --

यहाँ पर अनेक अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति आते है। अपने घर की ओर ऑफिस की ओर जाने के लिए।

स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है। पोस्ट ऑफिस अभी खुला हुआ है।

हमारे सामने एक नदी का है। नदी बहोत बड़ी है। नदी के अंदर दो व्यक्ति --

कलाकारी दिखाते हुए नज़र आ रहे है। यह एक प्रिंसिपल है जो कि इनका कार्य देखने के लिए यहां पर आयी हुई है।

यह नजारा हमारे सामने --

गोल रंग की है। ये अभी हरी-हरी है। यह बेचने के लिए ऊगा रखी है। ये मार्केट में सप्लाई की जायेगी।